अ कुछ व जलजीरा सा दिखाई दे रहा है वहाँ पर कुछ ठेला - सा दिखाई दे रहा है बाम जर कोई अंगूर का रस मिलता हो वहाँ पर कुछ रुपये दस रुपये में मिलता है वहाँ पर मुझे कुछ बहोत प्रकार के पेंडके दिख रही है वहाँ पर --

मतलब कुछ रेड दिख रहे है कुछ ब्लैक भी दिख रहे है वहाँ पर कुछ पोस्टर भी दिख रहे है पोस्टर में पुरे बाइक की तस्वीर दिखाई कुछ मेले की तस्वीर भी दिखाई दे रही है वहाँ पर उजाला भी मुझे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वहाँ पर उसका उसका पेंट भी मुझे पीला पीला दिख रहा है।